और यहां पे दो बाइक लगा हुआ है गाड़ी लगा हुआ है.

कुछ आदमी लोग हे.

बहुत सारे यहां पे टाइल्स लगा हुआ है रंग बिरंगा का.

येह एक पार्क है घूमने का.

कुछ कुर्सियां लगे हुए हैं.

एक गाड़ी है इसमें मरीज को बैठाया जाता है.

ये एक रोड हे सामने मे पोस्ट ऑफिस हे.

यहाँ पे एक चक्र लगा हुआ है।

यहाँ पे बोहोत सारे पेड़ हे कुछ बोहोत सारे पेड़ हे बोहोत सारे घासे हे.

यहां पे नया नया गाड़ी खरीदें जाते है.

एक गाडी लगा हुआ हे.

ओर मट्टी भूरा कलर का हे अगल बगल में पेड़ है.

ये एक मुर्गी का बाजार हे.

दो-चार कुर्सी है एक टी.वी है।

कुछ कपड़े लगे हुए हैं.

मट्टी है जाली का रंग रा हरा है।

लड़कियों लोग का साडी का दुकान हे.

और इनके और वो अं अं ड्रेस फ्रॉक पहनी हे पीला कलर का.

कुछ पेड़ दिख रहा है.

और कुछ पाइप लगा हुआ है पानी पटाने वाला रोड में पानी गिरा हुआ है.

घांस है करकट है नीचे पक्का है

एक है.

पत्थर पर हरा भरा हैं.

पहाड़ नीला कलर का हे.